इस चित्र में एक पानी के।

इस चित्र में मछली मार्केट।

सारी मछलियां पड़ी।

थर्माकोल के डिब्बे।

कुर्षियां रखी हुई हैं।

सामने पूजा हो रही है।

बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं।

कुछ लोग बैठे हुए।

नजर आ रही हैं।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

इस चित्र में लोग आराम करते दिख रहे हैं।

स्विमिंग पूल दिख रहा है।

बहुत सारे लोग--

एक कपड़ों की दुकान--

इस चित्र में एक उम्मम कृपया--

खड़े दिख रहे हैं।

गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में बहुत सुंदर--

इस चित्र में एक बहुत--

सामने पोस्टर लगा हुआ।

पानी बहुत कम दिख रहा है ।

इस चित्र में एक नटराज डांस एकेडमी --

चलता दिख रहा है।

मोटर की दुकान दिख रही है।

नींबू टमाटर केले --